यह चित्र एक बेंक के ऐ.टी.एम. का दिखाई दे रहा है।

बच्चो के लिए कई सारे झूले तथा खेलने के लिए फिसलवटी दिखाई दे रही है जिसपे बच्चा चढ़ते हुए दिखाई दे रहा है।

तथा कुछ फूलो की पंखुड़ियाँ इस कच्ची सड़क पर पड़ी दिखाई दे रहे है।

ये चित्र एक मेदान का--

इस चित्र मैं एक दुकान दिखाई दे रही है जिसमें पुरुषो के कपड़े की दुकान दिख रही है तथा दुकान का जो दरवाजा है वो कांच का निर्मित है।

कुछ भवन भी निर्मित है। तथा आसपास पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे--

ये चित्र एक गांव का दिखाई दे रहा है जहां एक छोटा कच्चा घर बना हुआ है तथा आस पास पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इस चित्र मैं एक रेलवे स्टेशन की पटरी दिखाई दे रही है जहाँ पर एक काला कुत्ता खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।